मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
आज फिर एक बार मन की बात के माध्यम से आप सभी कोटिकोटि मेरे परिवारजनों से मिलने का अवसर मिला है
मन की बात में आप सबका स्वागत है
कुछ दिन पहले देश ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो हम सभी को प्रेरणा देती है
भारत के सामर्थ्य के प्रति एक नया विश्वास जगाती है
आप लोग क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया के किसी बैट्समैन की सेंचुरी सुन कर खुश होते होंगे लेकिन भारत ने एक और मैदान में सेंचुरी लगाई है और वो बहुत विशेष है
इस महीने 5 तारीख को देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आँकड़े तक पहुँच गई है और आपको तो पता ही है एक यूनिकॉर्न यानी कमसेकम साढ़े सात हज़ार करोड़ रूपए का स्टार्टअप
इन यूनिकॉर्न्स का कुल वैल्यूएशन 330 बिलियन डॉलर यानी 25 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है
निश्चित रूप से ये बात हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात है
आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे कुल यूनिकॉर्न में से 44 फोर्टी फोर पिछले साल बने थे
इतना ही नहीं इस वर्ष के 34 महीने में ही 14 और नए यूनिकॉर्न बन गए
इसका मतलब यह हुआ कि ग्लोबल पैंडेमिक के इस दौर में भी हमारे स्टार्टअप्स वेल्थ और वैल्यू क्रिएट करते रहे हैं
इंडियन यूनिकॉर्न्स का एवरेज एनुअल ग्राउथ रते यूएसए उक और अन्य कई देशों से भी ज्यादा है
एनालिस्ट्स का तो ये भी कहना है कि आने वाले वर्षों में इस संख्या में तेज उछाल देखने को मिलेगी
एक अच्छी बात ये भी है कि हमारे यूनिकॉर्न्स डाइवर्सिफाइंग हैं
ये इकॉमर्स फिनटेक एडटेक बायोटेक जैसे कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं
एक और बात जिसे मैं ज्यादा अहम मानता हूँ वो ये है कि स्टार्टअप्स की दुनिया न्यू इंडिया की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट कर रही है
आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है छोटेछोटे शहरों और कस्बों से भी एंटरप्रेन्योर्स सामने आ रहे हैं
इससे पता चलता है कि भारत में जिसके पास इनोवेटिव आईडीईए है वो वेल्थ क्रिएट कर सकता है
साथियो देश की इस सफलता के पीछे देश की युवाशक्ति देश के टैलेंट और सरकार सभी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं हर किसी का योगदान है लेकिन इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है वो है स्टार्टअप वर्ल्ड में राइट मेंटरिंग यानी सही मार्गदर्शन
एक अच्छा मेंटर स्टार्टअप को नई ऊँचाइयों तक ले जा सकता है
वह फाउंडर्स को राइट डिसाइजन के लिए हर तरह से गाइड कर सकता है
मुझे इस बात का गर्व है कि भारत में ऐसे बहुत से मेंटर्स हैं जिन्होंने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है
श्रीधर वेम्बू जी को हाल ही में पद्म सम्मान मिला है
वह खुद एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं लेकिन अब उन्होंने दूसरे एंटरप्रेन्योर को ग्रूम करने का भी बीड़ा उठाया है
श्रीधर जी ने अपना काम ग्रामीण इलाके से शुरू किया है
वे ग्रामीण युवाओं को गाँव में ही रहकर इस क्षेत्र में कुछ करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं
हमारे यहाँ मदन पडाकी जैसे लोग भी हैं जिन्होंने रूरल एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए 2014 में ओनेब्रिज नाम का प्लैटफार्म बनाया था
आज ओनेब्रिज दक्षिण और पूर्वीभारत के 75 से अधिक जिलों में मौजूद है
इससे जुड़े 9000 से अधिक रूरल एंटरप्रेन्योर्स ग्रामीण उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएँ उपलब्ध करा रहे हैं
मीरा शेनॉय जी भी ऐसी ही एक मिसाल है
वो रूरल ट्राइबल और डिजेबल्ड यूथ के लिए मार्केट लिंक्ड स्किल्स ट्रेनिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं
मैंने यहाँ तो कुछ ही नाम लिए हैं लेकिन आज हमारे बीच मेंटर्स की कमी नहीं है
हमारे लिए यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि स्टार्टअप के लिए आज देश में एक पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार हो रहा है
मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमें भारत के स्टार्टअप वर्ल्ड के प्रगति की नई उड़ान देखने को मिलेगी
साथियो कुछ दिनों पहले मुझे एक ऐसी इंटरेस्टिंग और एट्रैक्टिव चीज़ मिली जिसमें देशवासियों की क्रिएटिविटी और उनके आर्टिस्टिक टैलेंट का रंग भरा है
एक उपहार है जिसे तमिलनाडु के थंजावुर के एक सेल्फहेल्प ग्रुप ने मुझे भेजा है
इस उपहार में भारतीयता की सुगंध है और मातृशक्ति के आशीर्वाद मुझ पर उनके स्नेह की भी झलक है
यह एक स्पेशियल थंजावुर डॉल है जिसे गी टैग भी मिला हुआ है
मैं थंजावुर सेल्फहेल्प ग्रुप को विशेष धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे स्थानीय संस्कृति में रचेबसे इस उपहार को भेजा
वैसे साथियो ये थंजावुर डॉल जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही खूबसूरती से ये महिला सशक्तिकरण की नई गाथा भी लिख रही है
थंजावुर में महिलाओं के सेल्फहेल्प ग्रुप्स के स्टोर और कियोस्क भी खुल रहे हैं
इसकी वजह से कितने ही गरीब परिवारों की जिंदगी बदल गई है
ऐसे कियोस्क और स्टोर्स की सहायता से महिलाएँ अब अपने प्रोडक्ट ग्राहकों को सीधे बेच पा रही हैं
इस पहल को थारगईगल कइविनई पोरुत्तकल विरप्पनई अंगाड़ी नाम दिया गया है
ख़ास बात ये है कि इस पहल से 22 सेल्फहेल्प ग्रुप जुड़े हुए हैं
आपको ये भी जानकार अच्छा लगेगा कि महिला सेल्फहेल्प ग्रुप्स महिला स्वयं सहायता समूह के ये स्टोर थंजावुर में बहुत ही प्राइम लोकेशन पर खुले हैं
इनकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी भी महिलाएँ ही उठा रही हैं
ये महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप थंजौर डॉल और ब्रोंज लैम्प जैसे गी प्रोडक्ट के अलावा खिलौने मैट और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बनाते हैं
ऐसे स्टोर की वजह से गी प्रोडक्ट के साथसाथ हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स की बिक्री में काफी तेजी देखने को मिली है
इस मुहिम की वजह से न केवल कारीगरों को बढ़ावा मिला है बल्कि महिलाओं की आमदनी बढ़ने से उनका सशक्तिकरण भी हो रहा है
मेरा मन की बात के श्रोताओं से भी एक आग्रह है
आप अपने क्षेत्र में ये पता लगायें कि कौन से महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं
उनके प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप जानकारी जुटाएँ और ज्यादासेज्यादा इन उत्पादों को उपयोग में लाएँ
ऐसा करके आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की आय बढ़ाने में तो मदद करेंगे ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी गति देंगे
साथियो हमारे देश में कई सारी भाषा लिपियाँ और बोलियों का समृद्ध खजाना है
अलगअलग क्षेत्रों में अलगअलग पहनावा खानपान और संस्कृति ये हमारी पहचान है
ये डाइवर्सिटी ये विविधता एक राष्ट्र के रूप में हमें अधिक सशक्त करती है और एकजुट रखती है
इसी से जुड़ा एक बेहद प्रेरक उदाहरण है एक बेटी कल्पना का जिसे मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ
उनका नाम कल्पना है लेकिन उनका प्रयास एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना से भरा हुआ है
दरअसल कल्पना ने हाल ही में कर्नाटका में अपनी 10वीं की परीक्षा पास की है लेकिन उनकी सफलता की बेहद खास बात ये है कि कल्पना को कुछ समय पहले तक कन्नड़ा भाषा ही नहीं आती थी
उन्होंने ना सिर्फ तीन महीने में कन्नड़ा भाषा सीखी बल्कि 92वे नम्बर भी लाकर के दिखाए
आपको यह जानकर हैरानी हो रही होगी लेकिन ये सच है
उनके बारे में और भी कई बातें ऐसी हैं जो आपको हैरान भी करेगी और प्रेरणा भी देगी
कल्पना मूल रूप से उत्तराखंड के जोशीमठ की रहने वाली हैं
वे पहले टीबी से पीड़ित रही थीं और जब वे तीसरी कक्षा में थीं तभी उनकी आँखों की रोशनी भी चली गई थी लेकिन कहते हैं न जहाँ चाहवहाँ राह
कल्पना बाद में मैसूरू की रहने वाली प्रोफेसर तारामूर्ति के संपर्क में आई जिन्होंने न सिर्फ उन्हें प्रोत्साहित किया बल्कि हर तरह से उनकी मदद भी की
आज वो अपनी मेहनत से हम सबके लिए एक उदाहरण बन गई हैं
मैं कल्पना को उनके हौंसले के लिए बधाई देता हूँ
इसी तरह हमारे देश में कई ऐसे लोग भी हैं जो देश की भाषाई विविधता को मजबूत करने का काम कर रहे हैं
ऐसे ही एक साथी हैं पश्चिम बंगाल में पुरुलिया के श्रीपति टूडू जी
टूडू जी पुरुलिया की सिद्धोकानोबिरसा यूनिवर्सिटी में संथाली भाषा के प्रोफेसर हैं
उन्होंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी ओल चिकी लिपि में देश के संविधान की कॉपी तैयार की है
श्रीपति टूडू जी कहते हैं कि हमारा संविधान हमारे देश के हर एक नागरिक को उनके अधिकार और कर्तव्य का बोध कराता है
इसलिए प्रत्येक नागरिक को इससे परिचित होना जरुरी है
इसलिए उन्होंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी लिपि में संविधान की कॉपी तैयार करके भेंटसौगात के रूप में दी है
मैं श्रीपति जी की इस सोच और उनके प्रयासों की सराहना करता हूँ
ये एक भारतश्रेष्ठ भारत की भावना का जीवन्त उदाहरण है
इस भावना को आगे बढ़ाने वाले ऐसे बहुत से प्रयासों के बारे में आपको एक भारतश्रेष्ठ भारत की वेब सिते पर भी जानकारी मिलेगी
यहाँ आपको खानपान कला संस्कृति पर्यटन समेत ऐसे कई विषयों पर एक्टिविटीज के बारे में पता चलेगा
आप इन एक्टिविटीज में हिस्सा भी ले सकते हैं इससे आपको अपने देश के बारे में जानकारी भी मिलेगी और आप देश की विविधता को महसूस भी करेंगे
मेरे प्यारे देशवासियो इस समय हमारे देश में उत्तराखण्ड के चारधाम की पवित्र यात्रा चल रही है
चारधाम और खासकर केदारनाथ में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुँच रहे हैं
लोग अपनी चारधाम यात्रा के सुखद अनुभव शेयर कर रहे हैं लेकिन मैंने ये भी देखा कि श्रद्धालु केदारनाथ में कुछ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गन्दगी की वजह से बहुत दुखी भी हैं
सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी बात रखी है
हम पवित्र यात्रा में जायें और वहां गन्दगी का ढ़ेर हो ये ठीक नहीं
लेकिन साथियो इन शिकायतों के बीच कई अच्छी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं
जहां श्रद्धा है वहाँ सृजन और सकारात्मकता भी है
कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो बाबा केदार के धाम में दर्शनपूजन के साथसाथ स्वच्छता की साधना भी कर रहे हैं
कोई अपने ठहरने के स्थान के पास सफाई कर रहा है तो कोई यात्रा मार्ग से कूड़ाकचरा साफ कर रहा है
स्वच्छ भारत की अभियान टीम के साथ मिलकर कई संस्थाएँ और स्वयंसेवी संगठन भी वहां काम कर रहे हैं
साथियो हमारे यहाँ जैसे तीर्थयात्रा का महत्व होता है वैसे ही तीर्थसेवा का भी महत्व बताया गया है और मैं तो ये भी कहूँगा तीर्थसेवा के बिना तीर्थयात्रा भी अधूरी है

सावन मास में तो शायद हर गांव में कोईनकोई मेला लगता है
साथियो हम जहाँ कही भी जाएँ इन तीर्थ क्षेत्रों की गरिमा बनी रहे आई सुचिता साफ़सफाई एक पवित्र वातावरण हमें इसे कभी नहीं भूलना है उसे ज़रूर बनाए रखें और इसीलिए ज़रूरी है कि हम स्वच्छता के संकल्प को याद रखें
कुछ दिन बाद ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाता है
पर्यावरण को लेकर हमें अपने आसपास के सकारात्मक अभियान चलाने चाहिए और ये निरंतर करने वाला काम है
आप इस बार सब को साथ जोड़ कर स्वच्छता और वृक्षारोपण के लिए कुछ प्रयास ज़रूर करें
आप खुद भी पेड़ लगाइये और दूसरों को भी प्रेरित करिए आई
मेरे प्यारे देशवासियो अगले महीने 21 जून को हम 8वाँ अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने वाले हैं

विश्व के टॉप बिजनेस पर्सन से लेकर फिल्म और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज तक स्टूडेंट्स से लेकर सामान्य मानवी तक सभी योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना रहे हैं आई मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर आप सभी को बहुत अच्छा लगता होगा
साथियो इस बार देशविदेश में योग दिवस पर होने वाले कुछ बेहद इनोवेटिव उदाहरणों के बारे में मुझे जानकारी मिली है
इन्हीं में से एक है गार्डियन रिंग एक बड़ा ही यूनिक प्रोग्राम होगा
इसमें मूवमेंट ओएफ सुन को सेलिब्रेट किया जाएगा यानी सूरज जैसेजैसे यात्रा करेगा धरती के अलगअलग हिस्सों से हम योग के जरिये उसका स्वागत करेंगे
अलगअलग देशों में इंडियन मिशन्स वहाँ के लोकल टाइम के मुताबिक सूर्योदय के समय योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे
एक देश के बाद दूसरे देश से कार्यक्रम शुरू होगा
पूरब से पश्चिम तक निरंतर यात्रा चलती रहेगी फिर ऐसे ही ये आगे बढ़ता रहेगा
इन कार्यक्रमों की स्ट्रीमिंग भी इसी तरह एक के बाद एक जुड़ती जायेगी यानी ये एक तरह का रिले योगा स्ट्रीमिंग इवेंट होगा
आप भी इसे जरूर देखिएगा
साथियो हमारे देश में इस बार अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए देश के 75 प्रमुख स्थानों पर भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होगा
इस अवसर पर कई संगठन और देशवासी ने अपनेअपने स्तर पर अपनेअपने क्षेत्र की खास जगहों पर कुछ न कुछ इनोवेटिव करने की तैयारी कर रहे हैं
मैं आपसे भी ये आग्रह करूँगा इस बार योग दिवस मनाने के लिए आप अपने शहर कस्बे या गाँव के किसी ऐसी जगह चुनें जो सबसे खास हो
ये जगह कोई प्राचीन मंदिर और पर्यटन केंद्र हो सकता है या फिर किसी प्रसिद्ध नदी झील या तालाब का किनारा भी हो सकता है
इससे योग के साथसाथ आपके क्षेत्र की पहचान भी बढ़ेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा
इस समय योग दिवस को लेकर 100 डे काउंटडाउन भी जारी है या यूँ कहें कि निजी और सामाजिक प्रयासों से जुड़े कार्यक्रम तीन महीने पहले ही शुरू हो चुके हैं
जैसा कि दिल्ली में 100वें दिन और 75वें दिन के काउंटडाउन प्रोग्रामेस हुए हैं
वहीं असम के शिवसागर में 50वें और हैदराबाद में 25वें काउंटडाउन इवेंट आयोजित किये गए
मैं चाहूँगा कि आप भी अपने यहाँ अभी से योग दिवस की तैयारियाँ शुरू कर दीजिये
ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए हर किसी को योग दिवस के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आग्रह कीजिये प्रेरित कीजिये
मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी योग दिवस में बढ़चढ़कर के हिस्सा लेंगे साथ ही योग को अपने दैनिक जीवन में भी अपनाएंगे
साथियो कुछ दिन पहले मैं जापान गया था
अपने कई कार्यक्रमों के बीच मुझे कुछ शानदार शख्सियतों से मिलने का मौका मिला
मैं मन की बात में आपसे उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ
वे लोग हैं तो जापान के लेकिन भारत के प्रति इनमें गज़ब का लगाव और प्रेम है
इनमें से एक हैं हिरोशि कोइके जी जो एक जानेमाने आर्ट डायरेक्टर हैं
आपको ये जानकार बहुत ही ख़ुशी होगी कि इन्होंने महाभारत प्रोजेक्ट को डायरेक्ट किया है
इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कैम्बोडिया में हुई थी और पिछले 9 सालों से ये निरंतर जारी है हिरोशि कोइके जी हर काम बहुत ही अलग तरीके से करते हैं
वे हर साल एशिया के किसी देश की यात्रा करते हैं और वहां लोकल आर्टिस्ट और म्यूजिशियन्स के साथ महाभारत के कुछ हिस्सों को प्रोड्यूस करते हैं
इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उन्होंने इंडिया कैम्बोडिया और इंडोनेशिया सहित नौ देशों में प्रोडक्शन किये हैं और स्टेज परफॉर्मेंस भी दी है
हिरोशि कोइके जी उन कलाकारों को एक साथ लाते हैं जिनका क्लासिकल और ट्रेडिशनल एशियन परफॉर्मिंग आर्ट में डाइवर्स बैकग्राउंड रहा है
इस वजह से उनके काम में विविध रंग देखने को मिलते हैं
इंडोनेशिया थाइलैंड मलेशिया और जपन के परफॉर्मर्स जावा नृत्य बाली नृत्य थाई नृत्य के जरिए इसे और आकर्षक बना देते हैं
खास बात ये है कि इसमें प्रत्येक परफॉर्मर अपनी ही मातृभाषा में बोलता है और कोरियोग्राफी बहुत ही खूबसूरती से इस विविधता को प्रदर्शित करती है और म्यूजिक की डाइवर्सिटी इस प्रोडक्शन को और जीवंत बना देती है
उनका उद्देश्य इस बात को सामने लाना है कि हमारे समाज में डाइवर्सिटी और कोएक्सिस्टेंस का क्या महत्व है और शांति का रूप वास्तव में कैसा होना चाहिए
इनके अलावा मैं जापान में जिन अन्य दो लोगों से मिला वे हैं आत्सुशि मात्सुओ जी और केन्जी योशी जी
ये दोनों ही टेम प्रोडक्शन कंपनी से जुड़े हैं
इस कंपनी का संबंध रामायण की उस जापानीज एनिमेशन फिल्म से है जो 1993 में रिलीज हुई थी
यह प्रोजेक्ट जापान के बहुत ही मशहूर फिल्म डायरेक्टर युगो साको जी से जुड़ा हुआ था
करीब 40 साल पहले 1983 में उन्हें पहली बार रामायण के बारे में पता चला था
रामायण उनके हृदय को छू गयी जिसके बाद उन्होनें इस पर गहराई से रिसर्च शुरू कर दी
इतना ही नहीं उन्होंने जापानी भाषा में रामायण के 10 वर्जन्स पढ़ डाले और वे इतने पर ही नहीं रुके वे इसे एनिमेशन पर भी उतारना चाहते थे
इसमें इंडियन एनिमेटर्स ने भी उनकी काफी मदद की उन्हें फिल्म में दिखाए गए भारतीय रीतिरिवाजों और परम्पराओं के बारे में गाइड किया गया
उन्हें बताया गया कि भारत में लोग धोती कैसे पहनते हैं साड़ी कैसे पहनते हैं बाल कैसे बनाते हैं
बच्चे परिवार के अंदर एकदूसरे का मानसम्मान कैसे करते हैं आशीर्वाद की परंपरा क्या होती है
प्रात उठ करके अपने घर के जो सीनियर हैं उनको प्रणाम करना उनके आशीर्वाद लेना ये सारी बातें अब 30 सालों के बाद ये एनिमेशन फिल्म फिर से 4K में रिमास्टर की जा रही है
इस प्रोजेक्ट के जल्द ही पूरा होने की संभावना है
हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर जापान में बैठे लोग जो न हमारी भाषा जानते हैं जो न हमारी परम्पराओं के बारे में उतना जानते हैं उनका हमारी संस्कृति के लिए समर्पण ये श्रद्धा ये आदर बहुत ही प्रशंसनीय है कौन हिन्दुस्तानी इस पर गर्व नही करेगा
मेरे प्यारे देशवासियो स्व से ऊपर उठकर समाज की सेवा का मंत्र सेल्फ फोर सोसाइटी का मंत्र हमारे संस्कारों का हिस्सा है
हमारे देश में अनगिनत लोग इस मंत्र को अपना जीवन ध्येय बनाये हुए हैं
मुझे आन्ध्र प्रदेश में मर्कापुरम में रहने वाले एक साथी राम भूपाल रेड्डी जी के बारे में जानकारी मिली
आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रामभूपाल रेड्डी जी ने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली अपनी सारी कमाई बेटियों की शिक्षा के लिए दान कर दी है
उन्होंने करीब करीब 100 बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवाए और उसमें अपने 25 लाख से ज्यादा रूपए जमा करवा दिये
ऐसे ही सेवा का एक और उदाहरण यूपी में आगरा के कचौरा गाँव का
काफी साल से इस गाँव में मीठे पानी की किल्लत थी
इस बीच गाँव के एक किसान कुंवर सिंह को गाँव से 67 किलोमीटर दूर अपने खेत में मीठा पानी मिल गया
ये उनके लिए बहुत ख़ुशी की बात थी
उन्होंने सोचा क्यों न इस पानी से बाकी सभी गाँववासियों की भी सेवा की जाए
लेकिन खेत से गाँव तक पानी ले जाने के लिए 3032 लाख रूपए चाहिए थे
कुछ समय बाद कुंवर सिंह के छोटे भाई श्याम सिंह सेना से रिटायर होकर गाँव आए तो उन्हें ये बात पता चली
उन्होंने रिटायरमेंट पर मिली अपनी सारी धनराशि इस काम के लिए सौंप दी और खेत से गाँव तक पाइपलाइन बिछाकर गाँव वालों के लिए मीठा पानी पहुंचाया
अगर लगन हो अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीरता हो तो एक व्यक्ति भी कैसे पूरे समाज का भविष्य बदल सकता है ये प्रयास इसकी बड़ी प्रेरणा है
हम कर्त्तव्य पथ पर चलते हुए ही समाज को सशक्त कर सकते हैं देश को सशक्त कर सकते हैं
आजादी के इस अमृत महोत्सव में यही हमारा संकल्प होना चाहिए और यही हमारी साधना भी होनी चाहिए और जिसका एक ही मार्ग है कर्तव्य कर्तव्य और कर्तव्य
मेरे प्यारे देशवासियों आज मन की बात में हमने समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की
आप सब अलग अलग विषयों से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव मुझे भेजते हैं और उन्हीं के आधार पर हमारी चर्चा आगे बढती है
मन की बात के अगले संस्करण के लिए अपने सुझाव भेजना भी मत भूलिएगा
इस समय आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़े जो कार्यक्रम चल रहे हैं जिन आयोजन में आप शामिल हो रहे हैं उनके बारे में भी मुझे जरूर बताइए
नामो अप्प और माइगोव पर मुझे आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा
अगली बार हम एक बार फिर मिलेंगे फिर से देशवासियों से जुड़े ऐसे ही विषयों पर बातें करेंगे
आप अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास सभी जीवजंतुओं का भी ख्याल रखिए
गर्मियों के इस मौसम में आप पशुपक्षियों के लिए खानापानी देने का अपना मानवीय दायित्व भी निभाते रहें ये जरुर याद रखिएगा तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद